यहां पर एक व्यक्ति नहाता हुआ नजर आ रहा है सामने यहां पर कुछ पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे हैं।